यहां बहुत सारे पेड़ भी हैं।

यह एक कपड़े के दुकान का बाहर का चित्र है।

इस चित्र में एक ग्रीन कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

एक बच्चे ने लाल कलर का टी शर्ट पहन रखा है।

सभी स्टूडेंट ने सफेद कलर का ड्रेस पहन रखा है।

एक बहुत बड़ा डेस्क भी लगा हुआ है इस पर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे कपड़े भी रखे हुए हैं।

इसके ऊपर में बहुत सारे कप रखा हुआ है।

यहां पे एक मॉनिटर भी रखा हुआ है।

एक ब्लैक कलर का चेयर भी है।

साइकिल का कलर ब्लू और काला है।

कुछ ग्रीन कलर के पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में कुछ लोग बैठे हुए है।

यहां पे कुछ गाड़ियां भी लगी हुई हैं।

यहां पे बहुत सारी खेकिया भी हैं ये गाड़ी के ऊपर में ब्लू लाइट है।

एक शीशा का टेबल रखा हुआ है।

इस चित्र में एक पक्षी दिखाई दे रहा है।

यहां से बहुत सारी टंकियां भी है जो सफेद कलर का है।

इस चित्र में बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है।

एक आदमी ने सर में गमछी बांध रखा है।

एक आदमी ने लाल कलर बैग टांग रखा है।

यहां पे उसका बहुत सारा टूल भी रखा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

इस पर वी प्राउडली सर्वे लिखा हुआ है।

यह होटल बहोत बड़ा है।

यहां बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं यहां पे एक रास्ता बना हुआ है।

एक टेबल है जिसपे बहुत सारे सामान रखे गए हैं।